एक ठेला दिख रहा है ठेले में कांच का काउंटर बना हुआ है काउंटर में स्प्रिंग रोल मेनचूरियन लिखा हुआ है।

ये मैंट लिए हुए हैं मैंट किसी की ब्लू कलर की है और किसी की रेड है।

छोटे-छोटे पेड़ भी लगें हुए हैं। कुछ दूर तक एक बिल्डिंग भी बनी है और बड़े पेड़ भी लगे हैं।

के अंदर एक स्कूटी दिख रही है। कॉलेज के बाहर एक टूव्हीलर र खड़ा हुआ है जिसके हैंडल पे हेलमेट लगा हुआ है। कॉलेज --